इस इमेज में हमें चार-पाँच आदमी कुछ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं एक आदमी एक सीढ़ी पे खड़ा हुआ है दो तीन आदमी ऊपर बैठे हुए हैं।

इस इमेज मे हमे एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है। हाथ मे दिखा रहा है। लटकी हुई है। ये कच्ची है। हरे कलर की और नीचे हमे पड़े भी दिखाई दे रही है।

इसमे फल मे हमे संतरा अंगूर शेव सबी प्रकार के फल देख रहे है तरबूज मरबूज रखे हुए है एक आदमी सामने बैठा हुआ है जो फल को बेच रहा है दो एक लड़के आए है खरीदने के लिए --

इस इमेज हमे बहुत सारे फूल रखे हुए दिखाई दे रहे है यह फूल यल्लो कलर के है और रेड कलर के है यहा हमे एक स्टूल भी रखा हुआ --

दिखाई दे रहा है और एक आदमी हमे यहा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है महिला भी पीछे बैठी हुई है और एक आदमी हमे आता हुआ --

इस इमेज मे हमे एक सामने बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमे लिखा हुआ है विशाखा डेरी पार्लर ।

और यहा हमे द दो लेडीजे दिख रही है और तीन आदमी भी हमे दिखाई दे रहे है और उपर ट्यूबलाइट भी लगे हुए दिख --

इस इमेज मे हमे हमे बहुत सारे लड़का और लड़की डांस की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे है।

और कहीं कप है उसके रखे हुए हैं एक कंटेनर भी देख रहा है। और पीछे हमें च चाय छन्नी देव ढंग का--

और दूर हमे एक और बोट दिखाई दे रही है ब्लू कलर की और हमे यहाँ जंग- पेड़े भी बहुत सारे दिखाई दे रहे है मिट्ठी भी दिख रही है।

और हमे नीचे मं भी फर्श दिखाई दे रहा है।